जोकि सही से दिख नहीं रहा है।

जोकि बहुत अच्छा हरा भरा है।

बाहर एक टेबुल रखा हुआ है जिस पर सामान रखा है।

यह तस्वीर एक फिटनेस क्लब का है।

और एक कुर्सी भी रखा हुआ है।

ऊपर प्लास्टिक में कुछ टांगल है।

बैठने के लिए सोफा है।

ऊपर लाइट जला हुआ हैं।

तालाब देखने में अच्छा लग रहा है हरा भरा।

एक बड़ा सा लोहे का गेट भी लगा है।

घर के अगल बगल बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

मान में बादल है धूप का मौसम है।

पीछे स सादा कलर का लाइट जला हुआ है।

पीला कलर का गेट लगा है गेट में पर्दा लगा है।

पेड़ पौधे के आगे घर बना हुआ है।

बहोत ही बड़ा बिल्डिंग है।

ऊपर बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है जो कि ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं।

चार पांच ठो लाइट लगा है।

मंदिर के सामने एक ऑटो खड़ी है।

इसमें बड़ा सा लोहा का गेट लगा है।

दोनो तरफ खंभा है जो आसमानी कलर से पेंट किया है।

नीचे दो ठो टेबुल रखा हुआ है।

और हरा कलर का और पीला भी है और उसमें लाइट लगाया गया है।

आदमी के पीछे बैग टंगा हुआ है।

ऊपर बोर्ड का कलर पीला है।

नीचे लीची बोल जला हुआ है।

आगे बहोत सारा घर बना हुआ है।

यह तस्वीर एक बरंडे का है।

आगे का गेट का कलर बैंगनी कलर है।

पुल पर पीला कलर का पोस्टर स्टा हुआ है।

रोड में एक ऑटो जा रही है।

सामने एक कैंची रखा है।

कंधे पर बैग है टंगा हुआ।